और बेंच का कलर ग्ले ग्रे नजर आ रहा है।

साइड में बहुत सारे गमलो में पौधे लगाए दिखाई दे रहे हैं।

और एल्वेस्टर की छत दिखाई दे रही है और उस छत पे फैन भी लगा हुआ--

हरे कलर की मैट भी बिछी हुई है स्टेज के ऊपर झूमर भी लगी हुई नजर आ रही है।

इस चित्र में एक कार दिखाई दे रहे हैं जहां पे एक व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

मस्जिद के बाहर कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में दो घर दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान के बाहर के बैनर में आर के ट्रेवल्स लिखा हुआ है।

और सेलिंग में डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है और इस चित्र में बहुत सारे पुरुषें और--

यह चित्र एक ग्रोसरी मार्ट का नजर आ रहा है।

और बोर्ड के पास फोनपे का स्टीकर भी दिखाई दे रही है।

इस गार्डन में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए नजर आ रहे है।

और ऊपर में पंडाल भी लगाई गई है और बहुत सारे पब्लिक डांस को देख रही है।